नमस्कार इंट्रोडक्शन टो जीचेम्पेंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जीचेम पैंट के बारे में उपयोग और लाभ संस्थापन एक नयी फाइल खोलना मेन्यूबार टूलबार और स्टेटस बार हम निम्न के बारे में भी सीखेंगे डिस्प्ले एरिया डॉक्यूमेंट की विशेषतायें टूल बॉक्स उपयोग करना और एक्सटेंशन gchempaint के साथ ड्राइंग सेव करना यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए वी स्टैण्डर्ड तक केमिस्ट्री के मूलतत्व उबन्टु सॉफ्टवेयर सेंटर उपयोग करके जीचेम्पेंट को आसानी से संस्थापित किया जा सकता है
उबन्टु सॉफ्टवेयर सेंटर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर उबन्टु लिनक्स ट्यूटोरियल्स पर जाएँ
जीचेम्पेंट क्या है160
जीचेम्पेंट टू डायमेंशनल केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर है
यह मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफ़ेस रखता है
जीचेम्पेंट आपको अनुमति देता है टू डायमेंशनल केमिकल स्ट्रक्चर बनाने और दर्शाने की
टेम्पलेट्स ड्रैग और ड्राप करने की बॉन्ड्स की चौड़ाई एंगल और लम्बाई बदलना केमिकल कैल्क्युलेटर उपयोग करके कंपाउंड्स के मॉलीक्यूलर वेट का आंकलन करना
जीचेम्पेंट निम्न में सहायक है केमिकल स्ट्रक्चर्स का आसान दृश्य टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में बदलना
स्ट्रक्चर्स का मैग्नफकेशन परमाणुओं का ऑटोमैटिक और मैनुअल असाइनमेंट सबसे पहले देखें कि नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन कैसे खोलें
डैश होम पर क्लिक करें सर्च बार प्रदर्शित होता है सर्च बार में टाइप करें जीचेम्पेंट जीचेम्पेंट आईकन पर क्लिक करें
हम जीचेम्पेंट एप्लीकेशन टर्मिनल से भी खोल सकते हैं
एकसाथ CTRL ALT और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
टाइप करें जीचेम्पेंट और एंटर दबाएं
जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खुलती है
एक विशिष्ट जीचेम्पेंट विंडो इस प्रकार दिखती है
यह मेन्यूबार है
अन्य विंडो बेस्ड एप्लीकेशन की तरह ही जीचेम्पेंट एक आदर्श मेन्यू बार रखता है
मेन्यूबार मेन्यू आइटम्स रखता है जैसे फाइल एडिट व्यू टूल्स विंडोज़ और हेल्प ऑप्शन्स
टूलबार सर्वाधिक उपयोग हुए कमांड्स आईकन की तरह रखता है
यहाँ एक नयी फाइल खोलने के लिए आईकन्स हैं
मौजूदा फाइल खोलें फाइल सेव करें औए फाइल प्रिंट करें
यह डिस्प्ले एरिया है
डिस्प्ले एरिया फाइल के स्ट्रक्चर्स और विषय वस्तु को दर्शाता है जो हम ड्रा और एडिट करते है
डिस्प्ले एरिया के अंदर टूलबार से हम टूल्स को ड्रैग और ड्राप कर सकते हैं
स्टेटसबार वर्तमान जीचेम्पेंट क्रिया की जानकारी के बारे में दर्शाती है
यह मेन्यू आइटम्स की प्रासंगिक जानकारी के बारे में भी दर्शाता है
अब मैं डॉक्यूमेंट की विशेषताओं के बारे में समझाउंगी
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज विंडो खोलने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें
प्रॉपर्टीज पर जाएँ और इस पर क्लिक करें
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज विंडो खुलती है
इसे अधिकतम बढ़ाने के लिए मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज विंडो को ड्रैग करुँगी
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज विंडो निम्न क्षेत्र रखती है टाइटल डॉक्यूमेंट का टाइटल प्रोपेन टाइप करें
ऑथर्स नामे ऑथर का नाम माधुरी टाइप करें
इमेल इसे खाली छोड़ दें
हिस्टोरी यह क्षेत्र डॉक्यूमेंट की क्रिएशन डेट प्रदर्शित करता है
यह डॉक्यूमेंट की रीविजन डेट भी प्रदर्शित करता है
इसका मतलब यह डॉक्यूमेंट की अगली संशोधित डेट भी प्रदर्शित करता है
थीम इस क्षेत्र में जीचेम्पेंट रहने दें
कमेंट्स कमेंट क्षेत्र में हम डॉक्यूमेंट से सम्बंधित टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं
कंपाउंड का नाम और इसका फार्मूला एंटर करें
प्रोपेन ch3 ch2 च3 विंडो बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें
आगे टूलबॉक्स के बारे में सीखें
टूलबॉक्स के पास भिन्न टूल्स के लिए बटन्स हैं
टूलबॉक्स एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो के साथ प्रदर्शित होता है
अब टूलबॉक्स बटन्स उपयोग करके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं
सबसे पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं
प्रोपेन है ch3 ch2 च3 कार्बन चेन बनाने के लिए टूल बॉक्स से ऐड अ चेन टूल का उपयोग करें
एड आ चैन टूल पर क्लिक करें और फिर डिस्प्ले एआरईए पर क्लिक करें
डिस्प्ले एआरईए पर कार्बन चेन बनी है
चेन की ओरीएन्टेशन बदलने के लिए एड आ चैन टूल पर क्लिक करें डिस्प्ले एआरईए में चेन की ओरीएन्ट बदलने के लिए लेफ्ट माउस बटन को दबाएं और पकड़ें
लेफ्ट माउस बटन को तब तक न छोड़ें जब तक चेन की दिशा निश्चित न हो जाये
दिशा निश्चित होने के बाद लेफ्ट माउस बटन छोड़ दें
हम देखते हैं कि कार्बन चेन बन गयी है
अगर हम डिस्प्ले एआरईए पर क्लिक करते हैं तो चेन की लम्बाई और ओरीएन्टेशन निश्चित हो जाती है
अब चेन पर प्रत्येक स्थान पर परमाणू प्रदर्शित होते हैं
यहाँ हमारे पास परमाणुओं को प्रदर्शित करने के 3 स्थान हैं
पहले स्थान पर राइट क्लिक करें
एक सबमेनू खुलता है
अतोम सेलेक्ट करें और परमाणुओं को उस स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले सिम्बोल पर क्लिक करें
इसी तरह सारे स्थानों पर परमाणु प्रदर्शित करें
राइट क्लिक करके अतोम सेलेक्ट करें
डिस्प्ले सिम्बोल पर क्लिक करें
यहाँ प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना है
आगे उसी विंडो पर पेंटाने का स्ट्रक्चर बनायें
एड आ चैन टूल पर क्लिक करें फिर डिस्प्ले एआरईए पर क्लिक करें
चेन की लम्बाई बढ़ाने के लिए लेफ्ट माउस बटन को पकड़ें और कर्सर को खींचें
ओरीएन्टेशन को वांछित दिशा में बदलें और लेफ्ट माउस बटन छोड़ दें
अब सारे स्थानों पर परमाणुओं को प्रदर्शित करें
यहाँ हमारे पास परमाणु दर्शाने के लिए 5 स्थान हैं
पहले स्थान पर परमाणु दर्शाने के लिए राइट क्लिक करें
एक सबमेन्यू खुलता है
एटम्स सेलेक्ट करें और फिर डिस्प्ले सिम्बोल पर क्लिक करें
इसी तरह परमाणुओं को सारे स्थानों पर प्रदर्शित करें

यहाँ पेंटाने का स्ट्रक्चर बना है
अब फाइल को सेव करें
फाइल मेन्यू पर क्लिक करें सेव एएस सेलेक्ट करें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल टाइप के लिए ड्राप डाउन एरो पर क्लिक करें
कई प्रकार के सेव फॉर्मेट्स दिखते हैं
2डी केमिकल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें फाइल का नाम propaneजीचेम्पेंट टाइप करें और सेव बटन पर क्लिक करें
gchempaint एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव हुई है
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा जीचेम्पेंट के बारे में उपयोग और लाभ संस्थापन एक नयी फाइल खोलना मेन्यूबार टूलबार और स्टेटस बार हमने निम्न भी सीखे डिस्प्ले एरिया डॉक्यूमेंट की विशेषतायें टूल बॉक्स उपयोग करना और एक्सटेंशन gchempaint के साथ ड्राइंग सेव करना एक नियत कार्य की तरह मैं चाहती हूँ कि निम्न कार्य करें 1
n हेक्साने और n आक्टेन के स्ट्रक्चर्स बनायें 2
ओरीएन्टेशन बदलें 3
प्रत्येक स्थान पर परमाणु प्रदर्शित करें
नियत कार्य का आउटपुट इस प्रकार दिखना चाहिए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
अधिक जानकारी का लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
यह भारत सरकार के एम एच आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्र्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद